बड़े सा पेड़ का ठंगाल दिखाई दिया गया है सीढ़ियां दिखाई गई है।

पीछे स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है पत्थरों के ऊपर भगवान यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हरे कलर की मेटिंग दिखाई दे रही हैं।

इस चित्रा में स्टेज के ऊपर कुछ लोग दिखायी दे रहे हैं कुछ लोग कुर्सियों पे नीचे बैठे हैं।

इस चित्र में वॉटर पार्क की स्लाइड दिखाई दे रही हैछोटा सा पानी का--

ध्वजा दिखाई दे रहे हैं मंदिर के ऊपर गुम्बद दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है आकाश और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पीछे भी कई सारी बकरियाॅं दिखाई जा रही है।

इस चित्र में ब्लॉकस का बनाया हुआ रास्ता दिखई दे रहा है उस पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

निले कलर के पिलर दिखाई दे रहे है लाइट दिखाई दे रही हैं।

एक डस्टबिन दिख रहा है गेट पर एक ताला दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत बड़ा झरना दिखाया गया है जो कि पत्थरों के बीच में से दिख रहा है

जिसे बहुत अच्छे से स्टेज पर रखा है लाइट दिखाई दे रही है ।

पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ नील और सफेद कलार के बेलून दिखाये जा रहे हैं आकाश भी दिख रहा है।

पेड़ पर लाल फूल लगे हैं बड़े-बड़े वृक्ष देख रहे हैं आकाश दिख रहा है।

चित्र में एक दो मंजिला इमारत के ऊपर एक बंधन बैंक का बोर्ड दिख रहा है।